इसमें हमें होम इंटरप्राइसेस की जो है शॉप दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है इसमें इलेक्ट्रिकल्स के जो हैं सभी सामान अवेलेबल हैं।

एंड जो है हमे नदी में झंडे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक क्लासरूम है इसमें जो है सामने प्रोजेक्टर लगा है और ये बेंचे डली है बच्चो के बैठने के लिए।

जो है नेट लगी हुई है ब्लू कलर की।

एम एक बाइक भी रखी हुई है। जो है ट्राली बैग ले जा रहे हैं।

ये जो है एक है रेस्टोरेंट है। चौधरी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो है चेयर भी डली हुई हैं।

एंड यहाँ पे लेडीज भी हैं जेन्ट्स भी हैं तो सभी की जो है मिक्सअप लाइन है।

एक ऑटो एजेंसी है जहाँ पे जो हैं ऑटो अवेलेबल है मैं जैसे यहाँ दो ऑटो भी रखे दिखाई दे रहे है अंदर के साइड जो एक में --

और ये हमें छोटे-छोटे घांस भी दिखाई दे रही है हरे कलर की यानि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो है अलग से रंग कढ़ा है ये भी हमें दिखाई दे रहा है।

आसमान का जो है नीला आसमान है आसमान में छोटे-छोटे वाइट कलर के सफ़ेद कलर के बादल है। जो हमे नज़र आ रहे है नीचे की साइड जो है। छोटी-छोटी घास लगी हुई हैं।

ये क्लोज दो खिड़की नज़र आ रही है एंड रेड कलर का जो बोर्ड है ये भी नज़र आ रहा है और ये धुआँ फेकता हुआ ये पाइप --

काफी सारी हमें गर्ल्स भी बैठी दिखाई दे रहीं हैं एंड ऊँचे-ऊँचे खजूर के पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं।